तथा इस मैदान में एक फुटबॉल खेलने का पिच भी बना हुआ है।

जो की बहुत ही बड़े है तथा इस बिल्डिंग में ऐ.सी की सुविधा भी उपलब्ध है तथा या दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है।

इस पहाड़ के चारों साइड पेड़ लगे हुए है जो की बहुत ही अच्छे दिख रहे है तथा यहां पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ऑक्सीजन मिलती है तथा यहां पर बहुत प्रकार की जानवर भी होते हैं।